foreach लूपloopके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यह आखरी लूपloop है जिसे मैं कवर करने जा रहा हूँ
इस लूपloop का बुनियादी मूल सिद्धांत यह है कि यह अरैarray के मानों के माध्यम से लूपloop करेगा
या एक अरैarrayके एलीमेंट्स को
मुझे याद है कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कहा था कि एक अरैarrayके एलीमेंट्स को id tags भी कहते हैं
एक अरैarray के एलीमेंट्स को id tagsटैग्स नहीं बोलते
जब आप एक अरैarray के मान को echo एको कर रहे हैं
यह यहाँ पर id आईडीहैं जैसे numerical idसंख्यात्मक आईडीkeysकीज़ या tagsटैग्स
अतः मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ
तथापि वापस अपने foreach लूपloop पर चलते हैं अब हम शुरू करने के लिए एक अरैarray बनाएँगे
मैं इस नंबर्सnumbers को बोलने जा रहा हूँ और यह एक अरैarray है हमें अब इसे बनाना है
मैं आपको यह अपने पहले के ट्यूटोरियल्स में दिखा चुका हूँ और हमारे पास संख्याएँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10
अतः foreach इस तरह से है
अतः हमारे पास foreach है और फिर यहाँ पर हमारी कंडीशन है अच्छा तो मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहना है
अतःचलिए मैं अरैarray को नाम देता हूँ अर्थात नम्बर्स
और फिर हम कहते हैं as और फिर हम कहते हैं valueअच्छा तो हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं
हम इसे कुछ भी कह सकते हैं किन्तु मैं वेल्यू टाइप करूँगा
और फिर कर्लीcurly कोष्ठकों के भीतर प्रमुख कमांड echo valueएको वेल्यूहोगा
और अंत में हम एक लाइन ब्रेक जोड़ देंगे और चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं
अतः हमारे लूपloop से यह सामने आया यह लूपloop के जरिये एकोecho करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है आप एक अरैarray के माध्यम से एकोecho करने की लिए अन्य लूपोंloops का उपयोग कर सकते हैं आप को इसे खुद लिखना पड़ेगा जबकि संभवतः यह करने के लिए यह सबसे सरल तरीका है
अतः जब तक आपको यह स्मरण है आप अपनी अरैarray के माध्यम से एकोecho कर सकते हैं अपने अरैarray के हर एक भाग पर ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर सम्भवतः इसे एक नई अरैarray में संचय कर सकते हैं
यद्यपि मैं आपको दर्शाने जा रहा हूँ कि कैसे एक सरल तरीके से हेरफेर करें
अब मैं क्या करूँगा कि मैं 2 गुणे का पहाड़ा करने जा रहा हूँ
अतः मैं इसे निकाल देता हूँ और मैं निम्न कहूँगा
अतः मुझे यहाँ अरैarray की संख्या times 2 is चाहिए और फिर इसके बाहर नई वेल्यू होगी अतः हम अरैarray के प्रत्येक एलीमेंट को गुणा करने जा रहे हैं अरैarray की प्रत्येक संख्या को 2 से
चलिए नम्बर्सnumbers बोल कर शुरु करते हैं
माफ़ कीजिये हम वेल्यू कहने जा रहे हैं क्योंकि हमने प्रत्येक foreach एलीमेंट वेल्यूvalue नामक इस वेरिएबल में रखा है
अतः इनमें से प्रत्येक की वेल्यू value लूप के जरिये बारी में हैं
अतः value times 2 is और फिर इसके बाद हम कुछ कोष्ठक डालेंगे इसके अन्दर हम लिखेंगे value times 2
याद रखिये यह एक गणितीय ऑपरेटर है एक अरिथ्मेटिकल ऑपरेटर जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था
यह एक गणितीय ऑपरेटर है किन्तु सही नाम अरिथ्मेटिक है
अच्छा यह दो से गुणा करने जा रहा है
अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं क्या करूंगी कि इसे गुणजmultipleके रूप में बनाता हूँ
एक नए वेरिएबल के रूप में
और यहाँ multiple
2 के बराबर होने जा रहा है अतः अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने मूलतः इसे बदल दिया है
मैं इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल सकता हूँ
चलिए इसे लोडload करें और रिफ्रेश करें
ओह! हम ब्रेकbreak भूल गये
अतःचलिए यहाँ अंत में बस इसे जोड़ देते हैं
हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं
माफ़ कीजिये1 times 2 is 2
2 times 2 is 4 इसी तरह से पूरा 10 times 2 is 20 तक
हम जानते हैं कि यह सारे सही हैं
हम इसे बदल सकते हैं चलिए कहते हैं कि हमें 10 गुणे का पहाड़ा चाहिए
रिफ्रेश करें 1 times 2 is oh! नहीं हम इस 2 को गुणजmultiple में बदलना भूल गये
अब यह हमारी संख्या दर्शाएगा
रिफ्रेश करें
अतः 1 times 10 is 10 2 times 2 is 2 times 10 is 20 10 times 10 is a hundred
अतः जब तक हम गुणजmultiple का मान बदलते हैं चलिए 12 गुणे का पहाड़ा बोलते हैं
हमारे 2 मान बदलने जा रहे हैं
हमें यह मिला है
अतः इस foreach लूपloop और अरैarray से मैंने वास्तव में एक मूलभूत मल्टिपल प्रोग्राम बनाया जिससे कि आप अपने पसंद की संख्या के किसी भी सेट के लिए टाइम्स टेबलtimes table देख सकते हैं
तो यह foreach लूपloop है मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से आपसे विदा लेता हूँ
देखने के लिए धन्यवाद